इसके बाहर दो ए_सी का वेंटीलेटर लगा हुआ है।

के बगल पे एक पोस्टर लगा हु--

यहां दो मशीन रखी हुई है जोकि टी_वी_एस है।

इसके पीछे खाली जगह है जिसमें पेड़ घास उगे हुए है।

हरे रंग का कपड़ा बिछा हुआ है।

यह चित्र एक रेस्टोरेंट की है।

जमीन पर सूखे पत्ते गिरे हुए हैं और कुछ झाड़ उगे हुए हैं।

यह चित्र एक कपड़े के शोरूम के बाहर का है जिसका गेट कांच का है।

यह चित्र एक गार्डन की है जहां पे ग्राउंड।

आगे बिछा हुआ है जिसपे एक व्यक्ति काले रंग का शर्ट पहनकर नमाज पढ़ रहा है।

उसमें सफेद रंग से कुछ लिखा हुआ है।

यह चित्र एक कपड़े की दुकान की है जिसका सेलिंग सफेद रंग का है।

साइड साइड पे स्लैप बना हुआ है जिसमें फ्रूट्स रखे हुए हैं।

इसका पिलर पे कुछ कुछ पोस्टर लगी हुई है।

एक लाल रंग का पोस्टर लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है वी टू ।

कुछ स्टैंड बनी हुई है जिस पे कपड़ा लगा हुआ है।

यह चित्र एक स्टेशन के पास का है जहां पे पटरी बिछी हुई है और उसके आसपास गिट्टी है।